और बहुत अच्छा लग रहा ये सब घास बिक्री का है क्योंकि सब प्लास्टिक में ये किसी नर्सरी बर्सरी का फोटो लग रहा है।

यहाँ पर एक चाये पत्ती की घास लग रही है और कुछ आदमी है जो चाये पत्ती या दूध बुध छिड़क रहे है।